अरे वाह! अरे बाप रे बाप! कितना बस लगा है यहाँ पे बस स्टैंड होगा ये बस स्टैंड में कितना सारा बस लगा है स्लीपर से लेके --

वहाँ इतना बड़ा गलियारी है इधर पौधा चीकू है क्या कितना की अमरुद है नहीं पता लग रहा है पता हरा-हरा जैसा है इसलिए समझ नहीं आ रहा है हमको लेकिन जो भी है इतना मस्त अरे आम है शायद ।

ये सब तो बच्चे लोग के लिए बहोत अच्छा है बहोत सुंदर है बहोत अच्छा लग रहा है देख सकते है बॉर्नवीटा पीजिये गा तो पुष्टे हो जाये गा शरीर--

क्या बात है कितना अच्छा लग रहा इधर वाओ क्या बात है देख सकते है तो देख रहे है ज़ूम करके तो इतना अच्छा लग रहा है मत पूछिए दो ठो आदमी है यहाँ पे दोनों स्नान कर रहे है कितना सुन्दर से--